यहाँ बैलून से सजा हुआ है यहाँ ढेर सारी अच्छी--

गाइज यह रेसीडेंटल न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल का गेट है। इस --

और उस स्कूल के गेट पर दो आदमी खड़ा है। और उसके बगल में पोस्टर है। वो पोस्टर पे श्री विजिंदर प्रसाद यादव लिखा--

यह एक दुकान है। इस दुकान में सरसो का तेल है पार्ले-जी बिस्कुट है मैगी है अ फाइव स्टार चॉकलेट है बिस्कुट है किसमिस चॉकलेट --

हेलो गाएज यह दृश्य में कुछ बच्चा है और बच्चे के बगल में खिड़ी- ढेर सारी खिड़कियां हैं और शिक्षिका भी है।

हेलो गाइज यह दृश्य में कुछ लड़किया रंगोली बनाते हुए दिख रहा है रंग--

हेलो गाइज यह बहुत ही अच्छा दृश है। इस दृश् में बहुत ही जंगल है और जंगल के बगल में एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हॉस्पिटल का एक घर है और उस घर के ऊपर में लिखा हुआ है फीमेल जेनरल वॉर्ड |